नीले कलर शर्ट पहने हुए एक औरत भी गुजर रही है सामने से कुछ एक गेट गेट लगा हुआ है और एक दीवार है जो सफ़ेद रंग की है।

और बाउंड्री का रंग सफ़ेद कलर का है घर का रंग भी सफ़ेद कलर का है उसपे पीले कलर की पट्टी बनी हुई है। घर के सामने एक पेड़ लगा हुआ है और एक ऊपर गुम्बद सी बनी हुई है हर और सामने कुछ कंकड़--

और कुछ छोटे बड़े पेड़ लगे हुए है कुछ जमीन पर कचरा भी डला हुआ है सामने जो घने पेड़ लगे हुए है जो की कुछ बड़े है और कुछ छोटे है। उनमे भी--

एक प्लस निशान बना हुआ है इसपे कोई लटका हुआ है और वह गोल्डेन कलर का बना हु है ये एक नीचे पत्थर बन लगे हुए है।

कुछ पट्टिया डली हुई है और कलर की है पेड़ों पर रोशनी पड़ रही है कुछ कुछ जगह और नीचे भी कुछ छोटे और अड़के बड़े पेड़ ले हुए है घास भी लगा हुआ जमीन--

पेड़ लगे हुए है उधर भी कुछ पेड़ लगे हुए है सामने एक बाउंड्री सी बनी हुई है इटो कि है और कुछ छोटे छोटे पेड़ लगे हुए है कुछ बड़े बड़े पेड़ लगे है एक पटिये की दीवार है और आसमान खुला हुआ है।

एक स्टेडीअम सा बना हुआ है जो सफेद कलर की गुम्बद है और ऊपर उसमे बादल छाए हुए है चारो तरफ पेड़ लगे हुए है।

उसकी बगल मे एक बाउंड्री लगी हुई है इधर कुछ पेड़ लगे हुए है बीच मे एक ग्राउन्ड है जिसमे हरा घास लगा हुआ है और कुछ जगह घास नही लगा हुआ है आसमा--